ये कोई गार्डन है जैसे लग रहा है अगल-बगल में बड़े-बड़े पेड़ हैं किनारे में और बीच में रथ जैसे लग रहा है।

सात ऊंट का मूर्ति है और बीच में रथ है इसको ऊंट लोग खींच रहे है ऐसा डिजाइन किया हुआ है बीच में फबाराह वाला पानी है।

ये बहुत बड़ा नदी है जैसे दिख रहा है यहां पे पहाड़ भी है बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी हैं।

और अगल-बगल बहुत बड़े बड़े पेड़-पौधे है।

ये बहुत बड़ा नदी लग रहा है नदी में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है।